पीछे जंगल झाड़ पानी नाला सब दिख रहा है इसमें।

और ये येलो कलर से पेंटेड हैं।

स्विच रखा हुआ है इतना सुन्दर है।

और यहाँ पे एक डब्बा जैसा --